एल_जी सैमसंग गोदरेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सी_सी_टी_वी कैमरा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी लाइट व पंखे दिखाई दे रहे हैं।

एक म्यूजिक सिस्टम दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी बच्चियां व मैडम दिखाई दे रही है।

बहुत सारे कूड़ेदान दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे गैस सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं।

पंखे दिखाई दे रहे हैं लाइटे दिखाई दे रही है।